कुछ जेन्स खड़े हुए है बाहर भी बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

यह एक गणतंत्र द्वार है जहाँ बहोत सारे वृक्ष लगे हुए हैं एक ऑटो जा रहा है जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी शर्ट का कलर वाइट है और आसमान दिख रहा है और रेलिंग है।

एक टीचर खड़ी हुई हैं जिस जिसने येलो कलर की साड़ी पहेन रखी है और विंडो भी हैं

यह एक बैंक है इसका मैन गेट चैनल गेट है बाहर दो बाइक खड़ी हुई हैं।

एक मेडिकल होल है जिसका मैन गेट दिख रहा है जो कि ब्राउन कलर का है ऊपर ब्लू कलर में एक बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर एक विंडो है फिर उसके ऊपर एक और विंडो है।

और पेड़ के निचले हिस्से में वाइट वाइट चुना लगा हुआ है और पूरे बाजू में रेलिंग है।

यह एक मंदिर है जहां पर रेलिंग बनी हुई जो कि स्टील की है।

यहाँ पर बहुत सारी पेड़ लगे हुए हैं मस्जिद है दो व्यक्ति निचे खड़े हुए हैं और खुला आसमान दिख रहा है मस्जिद के ऊपर बहुत सारे साउंड लगे हुए हैं।